ये एक किराना की दुकान है जिसको हम अंग्रेजी में--

बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी रोज मर्रा की--

दिए गए चित्र में हम एक हॉल की तस्वीर देख रहे हैं।

इमारत देख रहे हैं काफी बड़ी इमारत है बहोत ही--

जिसका क लाल और सफेद रंग से--

उनके साथ हमें एक पीछे महिला भी दिख रही हैं।

यानी इसके ऊपर भी एक दुकान बनी हुई है या तो--

काउंटर पे खाने-पीने का सामान दिख रहा है।

और बहुत सारे खाने पीने के समान काउंटर में--

चलने वाले फुटपाथ के रास्ते में एक बच्चा दिख रहा।

दिए गए चित्र में हमें बहुत ही विशाल--

बहुत ही अच्छे से बना है और काफी ऊंचा भी--

बैनर लगे हैं वहाँ पर पिज्ज़ा की तस्वीर बनी हुई है।

पानी वगैरह का भी पूरा प्रबंध किया जाता है।

और इन ईमारतों के सामने में बहुत सारे वाहन--

कंप्यूटर में काम करते हुए दिख रहे हैं और--

रखी गई हैं और ओढ़ने के लिए कम्बल हैं।

हमें यहां पर एक बीयर बार की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर--

जो पेयर बाहर है सा इसके हम देखें तो--

यहाँ हमें दो युवक एक दीवार को बनाते हुए दिख रहे--

गुलाबी रंग की कमीज और काले रंग की पेंट पेहन रखी है।

हम यहां पर चित्र में एक दुकान देख रहे हैं जो कि बच्चों के खिलौने की दुकान है।

यहाँ पर हम किसी घर के किचन की तस्वीर देख रहे हैं जोकि काफी--

अ गर्म हवा जाने के लिए एगजास्ट फैन पे लगा हुआ है।

बोलते हैं टोकरी भी लगी हुई है गैस लगा--

तोते की बनावट बनाई गई है और भी बहोत सारी चीजे--